और नीचे कुछ हरी हरी घास लगी हुई है।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

और नीचे कुछ कुरकुरे टंगे हुए हैं।

यह एक मैदान है और नीचे में हरी हरी घास लगी हुई है।

यहां पे एक बड़ा सा काउंटर रखा है।

यहां पर एक बड़ी सी मेज रखी हुई है।

और उसके पास में दो बॉल भी पड़ी हुई है।

जो एक व्हाइट कलर की है और एक हरे कलर की है।

और यहां पे एक गेट ही लगा है।

यहां पे ऊपर एक बोर्ड लगा है।

और इसको एक वे एक आदमी चला रहा है और उसका चेहरा ढका है।